synfig का प्रयोग करके logo animation के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगें मिरर ऑब्जेक्ट बनाना
लोगो को एनीमेट करना
spherize effect बनाना
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux 1404 os synfig वर्जन 102
आइये synfig खोलते हैं
canvas पर जाएँ properties पर क्लिक करें
image में width को बदल कर 1920 तथा height को 1080 करें
other पर क्लिक करें locks and links में सभी चेकबॉक्स पर निशान लगाएँ
apply पर क्लिक करें और ok करें
आइए सर्वप्रथम एक बैकग्राउंड बनाते हैं
spline tool चुनें
layer type में tool options के अंतर्गत create a region layer विकल्प चुना जाना चाहिए
दिखाए गए अनुसार canvas के आधे हिस्से को कवर करता हुआ समकोण त्रिभुज बनाएं
पहले नोड पर राइट क्लिक करके होल्ड करें कॉंटेक्स्ट मेनू खुलता है
पुनः राइटक्लिक करें और loop spline चुनें अब लूप पूर्ण हो गया है
फिर transform tool पर क्लिक करें
हमें डिफ़ॉल्ट रंग भरा हुआ त्रिभुज मिलता है
आइए अब ctrl + s keys दबाकर फाइल सेव करते हैं
मैं डिफ़ॉल्ट नाम को बदल कर logoanimation करूँगी
और इस फाइल को desktop पर सेव करूँगी
आप अपनी इच्छानुसार कोई भी नाम दे सकते हैं
फिर हम इस त्रिभुज का रंग बदलेंगे
ऐसा करने के लिए parameters panel में color parameter पर क्लिक करें
अब रंग को बदल कर हरा करें और लेयर का नाम बदल कर triangle1 करें
लेयर की प्रतिलिपि बनाएँ और नाम बदल कर triangle2 करें
फिर रंग को बदल कर पीला करें
अब tool box में जाएँ और mirror tool चुनें
माउस को क्लिक और ड्रैग करके triangle2 के सभी नोड चुनें
देखें कि tool options में vertical अक्ष चयनित की गई है
अब त्रिभुज के ऊपरी बाएँ नोड पर क्लिक करें
इसे दिखाए गए अनुसार ऊर्ध्वाधर दिशा में फ्लिप करें
एक बार फिर tool options में अक्ष को बदल कर horizontal कर देते हैं
अब त्रिभुज के निचले बाएँ नोड पर क्लिक करें
इसे दिखाए गए अनुसार क्षैतिज दिशा में फ्लिप करें
ctrl+s keys दबा कर फाइल सेव करें
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं बारबार यह नहीं कहूंगी लेकिन कृपया नियमित अंतराल पर ऐसा करते रहें
फिर आइए इन दोनों त्रिभुजों को एनीमेट करते हैं
transform tool चुनें
turn on animate editing mode आइकन पर क्लिक करें
current frame बॉक्स में 20 टाइप करें और enter दबाएँ
keyframes panel में एक keyframe जोड़ें
शून्य फ्रेम पर वापस आएँ
दिखाए गए अनुसार पीले त्रिभुज के हरे बिंदु पर क्लिक करें और इसे कैनवास के बाहर ले जाएं
हरे त्रिभुज के लिए भी ऐसा ही करें
turn off animate editing mode आइकन पर क्लिक करें
एनीमेशन की जाँच करने के लिए time cursor को शून्य और 20
फिर आइए spoken tutorial logo लोगो इम्पोर्ट करते हैं
मैंने लोगो documents फोल्डर में रखा है
यह लोगो फाइल आपको इस ट्यूटोरियल के साथ दिए गए code files लिंक में मिल जाएगी
file पर जाएँ और import पर click करें
चूंकि मैं लेयर को rotate effect देना चाहती हूं इसलिए हम पहले logo layer को समूहबद्ध करेंगे
group layer का नाम बदल कर stlogo करें
handle में मौजूद नारंगी बिंदु का प्रयोग करके लोगो का आकार घटाएँ
अब turn on animate editing mode आइकन पर क्लिक करें
शून्य फ्रेम पर जाएँ
फिर stlogo group layer की ड्रॉपडाउन सूची में क्लिक करें और logopng layer चुनें
parameters panel में alpha amount को बदल कर शून्य कर दें
फिर logo में रोटेशन इफ़ेक्ट लगाते हैं
इसके लिए सर्वप्रथम logopng layer पर राइट क्लिक करें
फिर new layer transform पर और अंत में rotate पर क्लिक करें
अब 50
keyframes panel में एक keyframe जोड़ें
parameters panel में रोटेशन अमाउंट को बदल कर 360 करें
पुनः logopng layer चुनें
अब 60
दिखाए गए अनुसार logo को थोड़ा ऊपर खिसकाएँ
turn off animate editing mode आइकन पर क्लिक करें
logo को डीसेलेक्ट करने के लिए canvas के बाहर क्लिक करें
फिर आइए कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं
तो text tool पर क्लिक करें और canvas पर क्लिक करें
एक टेक्स्ट बॉक्स प्रकट होता है यहाँ मैं spoken tutorial टाइप करके ok पर क्लिक करूँगी
parameters panel में टेक्स्ट का रंग बदल कर काला और आकार बदल कर 100 करें
मैं layer का नाम बदल कर spoken tutorial करूँगी
transform tool पर क्लिक करें और टेक्स्ट के हरे बिंदु को चुनें
टेक्स्ट को दिखाए गए अनुसार नीचे की तरफ़ canvas से बाहर ले जाएं
turn on animate editing mode आइकन पर क्लिक करें
अब 70
एक बार पुनः turn on animate editing mode आइकन पर क्लिक करें
spoken tutorial layer को समूहबद्ध करें और समूह का नाम बदल कर sttext करें
sttext group layer की ड्रॉपडाउन सूची पर क्लिक करें
spoken tutorial layer पर राइट क्लिक करें और फिर new layer पर क्लिक करें
अब distortions पर और फिर spherize पर क्लिक करें
spherize effect के मध्य हरे बिंदु पर क्लिक करें और टेक्स्ट के आरंभ बिंदु तक ड्रैग करें
इफ़ेक्ट को बड़ा करने के लिए बाएँ हरे बिंदु पर क्लिक करें और ड्रैग करें
एक बार पुनः turn on animate editing mode पर क्लिक करें
इस बार 100
अब turn off animate editing mode पर क्लिक करें
अंत में हम अपने logo animation को रेंडर करेंगे उससे पहले फाइल सेव कर लें
अब file पर जाएँ और render पर क्लिक करें
extension को बदल कर avi करें target को बदल कर ffmpeg करें
quality को बढ़ा कर 9 करें और render बटन पर क्लिक करें
अब अपनी फाइल को चेक करते हैं desktop पर जाएँ
आउटपुट पर राइट क्लिक करें और firefox web browser का उपयोग करके प्ले करें
हमारा लोगो एनीमेशन ऐसा दिखाई देता है
आप अपनी रचनात्मकता का उपयोग कर सकते हैं और अन्य विधि से भी बना सकते हैं
इसके साथ ही यह ट्यूटोरियल समाप्त होता है
आइए सारांशित करते हैं इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा एक मिरर ऑब्जेक्ट बनाना
लोगो एनीमेट करना spherize इफ़ेक्ट बनाना
यहां आपके लिए एक असाइनमेंट है synfig logo का प्रयोग करके एक लोगो एनीमेशन बनाएं
लोगो आपको code files लिंक में मिल जाएगा
आपका पूर्ण किया हुआ असाइनमेंट ऐसा दिखाई देना चाहिए
निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है
कृपया अपने समयबद्ध प्रश्न इस फोरम में भेजें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं आयोजित करती है और प्रमाण पत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा समर्थित है
इस मिशन से संबंधित अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है
यह ट्यूटोरियल इ अमित कुमार द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं ज्योति सोलंकी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद